हरे लाल रंग के फूल लगे हुए हैं।

कई सारी चेयर रखी हुई है और पंखा भी--

और उसमें से कई सारे पार्ट बाहर रखे हुए हैं और पास में स्क्रू भी--

एक एयरपोर्ट की चित्र है और उसमें एक--

और मशीने सफेद और ब्राउन रंग की है।

एक लाइट कलर का फूल भी है वो भी हरी डंडी के साथ--

यहां पर एक अंकल फूलों की माला बेच रहे हैं।